पेड़ है पीले पीले पत्ते है हरे पत्ते है हरियाली है चारों ओर पौधे है गुलदस्ते है।

एक होटल है पर लिखा हुआ है होटल गेट वे कर्नाटका है लाइट है ऊपर कांच है खिड़की है पर्दे है।

बडी सी बिल्डिंग है शटर है गेट है जीने है खिड़कीए है दरवाजे है काच है बादल है।

बहुत बड़ा सा रेस्टोरंट है लाइटे है पंखे है कुर्सिये है मेज है गुब्बारे है लाइटे है।